उस शहर में बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।

उस घर के सामने एक छोटा सा बावड़ी दिखाई दे रहा है।

उस रोड के किनारे एक के --

रोड के किनारे एक माकन बना हुआ दिखाई दे रहा है उस माकन के सामने एक है --

खम्बा लगा हुआ दिखाई दे रहा है खम्बे पर तार दिखाई दे रहा है।